और जैकेट भी है पुतला भी बगल में है और अंदर में बहुत सारा बहुत कुछ भी है लोग भी आते है इसको लेने खरीदने क लिए।

बहोत अगल बगल में भी पेड़ हैं छोटा छोटे भी पौधे हैं। और --

औ नंबर भी लगा है और अगल बगल ट्रेक्टर भी हे गाड़ी भी हे और पेड़ भी हे घर भी हे।